एक फूल जो हे ना नीला रंग का जो दिख रहा है बहुत मस्त लग रहा है ओहो हो इसमे गुलाब का फूल भी लग रहा है ना और लाल जेसा जो गुलाबी का--

ये देखिए भाई आपको एमरजेंसी में कहीं भी काम दे सकता है ये ए.टी.एम मशीन आप ह-हर आदमी ए.टी.एम खुला ले।

इसमें हर क्वालिटी की सुविधा दी गई है पंखा ब्लफ रूम भी बेहतरीन तरह से सजाए गए हैं देखिए वहां पे भी अति फुल रखा हुआ है।

वर्कआउट करने में बहुत सारी सुविधा देखिये हर चीज़ का सुविधा हे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता हे इस में बॉडी वोडी बन जाता हे देखिये जीम जाना बहुत--

देखिये भाई कोचिंग हे जिसमे पढाई बेहतरीन तरह से होती हे देखिये कितना अच्छा सिस्या स्टूडेंट पढ़ रहे।

देखने में तो मस्त लग रहा है देख वाइट फूल लगा है हुआ है। बल्ब रूम में मस्त देखने में--

देखिए कितना झक्कास सजाया गया है देखिए फूल भी है बाल्टी भी है कितना अच्छे तरह से फूल का डिज़ाइन किया उधर गमला में फूल है।

और देखने में भी मस्त नज़र आ जा रहा है बहुत झाकस लग रहा है नरियाल का घांस भी है।

ये भाई कितने अच्छे से क्रिकेट का मजा ले रहा है फिल्ड मे है चारो पट्टी में मजा आ रहा है हरियाली हरियाली देखने मे मस्त लग रहा देखने मे कितना अछा नजारा देखने मे लग रहा भाई गजब का नजारा है इसमें फिल्ड मे जो है ना क्रिकेट खेल रहा है भाई ।

देखिए नीचे स्टेज का होगा दिख रहा हे यह सब्जी का फल का दिख रहा हे घास में हरियालि भी दिख रहा हे इधर भी मस्त लग रहा हे दिखने मे।